जिन जो जिनका रंग काला लाल और पीला है।

ब और एक एक आदमी खड़ा खुर्सी रक्खी हुई है एक आद --

और यहाँ पर उनके हाथों में प्लेट है। प्लेट में खाना है।

यहाँ पर हमें एक बस दिख रही है। जिस पर लिखा हुआ है ट्रेवल पॉइन्ट ।

इनमें शीशे लगे हैं। नीचे की तरफ बहोत सारे शीशे लगे हैं।

की तरफ फर्श दिख रही है जिसमें टाइल्स लगी हुई हैं।

ऊपर की तरफ गुब्बारे दिख रहे हैं। सफ़ेद रंग के लाल रंग के और सामने की तरफ --

जो जिनके उपर पैन्ट हुआ है काले और सफ़ेद रंग का --

जिन्होंने लोअर टी-शर्ट पहनी हुई है ।

ने शूट पहना हुआ है। काले रंग का दुपट्टा पहना हुआ --

पेड़ के अन्य चित्रक बने हुए हैं।

एक गुमती दिख रही है जिसपर भी नीले रंग का पेंट है और मालाएँ दिख रहीं हैं।

यहाँ पर हमें एक ईमारत दिख रही है इमार --

यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज स्पा इस स्पेयर और यहाँ --

और अ बाउंड्री लगी हुई है। सड़क दिख रही है ।

के हाथों में जूता है और जिसके पैरों में भी जूता है।